टीचर्स भी यहाँ के बहुत ही अच्छे है ये स्कूल अर्ध सरकारी है।

टासे उबाल के हम चटनी से भी खा सकते हैं।

रिसर्च सेण्टर भी है और मल्टीस्पेसिलिटी हॉस्पिटल है।

बाल को काटने वाले वो भी बोहोत कम्फर्ट है और फैन लगा हुआ है पूरा एयर कन्डिशनर है।

जो गोरखपुर वालों की ये पहली जगह है यहाँ सबको अच्छा लगता है टूरिस्ट भी यहाँ आते --

और ये मटकी है में शादी-बियाह में शुभ कार्य में कार्य पड़ता है इसका और ये कुम्हार लोग बनाते हैं बहोत मेहनत ल --

आ शोप हुआ शरफ़ हुआ साबुन हुआ ये सब सारे चीजे हमें यहाँ अवेलेबल मिलेंगी।